डेकोरेशन गुब्बारा से डेकोरेशन की गई है। नीले लाल गुब्बारे से डेकोरेशन की गई है।

यह चित्रा एक का घर बनाने बन रहा है इस चित्र में पांच भाई घर बनाने का काम कर रहे हैं।

यहा एक तालाब का चित्र दिखाई दे रहा है तालाब तक जाने का--

यह एक योगा क्लास का चित्र दिखाई दे रहा है।

तीन तंबू जैसे बिल्डिंग दिख रही है।

मिठाइयां और आदि कुछ खरीदने के लिए दो भाई खड़े हैं।

क्रिसमस की थीम पर बना हुआ स्टी--

ए_टी_एम में जाने के रस्ता में पौधे हैं।

ड्रेस लटक रहे हैं इस दुकान में बहोत सारे ड्रेस स--

इस चि चित्र में बहुत सारी--

टैटू के फोटो रखे हुए है।

आ चित्रा एक छोटे से मंदिर का दिखाइ दे रहा--

बालों को अच्छे से रखने वाली चीजों का--

यह चित्र एक डैम का दिखाई दे रा है।